जमीन पे पानी और चारों तरफ घास हरे रंग की है।

ये मंदिर मूर्ति जिसमें ढेर सारी रखी है।

प्लेट में दो कटोरी और ढेर सारे पैसे रखे हैं।

जमीन पर तराजू हसिया मछली काटने वाली--

लकड़ी के दरवाजे व्हाइट कलर की बोरी चढ़ी हुई है।

हरे रंग के बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ सी डिजाइन बनी है।

ये एक क्रीम कलर का आलीशान घर है।

लोहे की रेलिंग और बैनर लगा है।

गुलाबी पीले लाल पर्दो और फूलों की सजावट है।

ऊपर की छत सफेद और ढेर सारी लाइट लगी है।

ये एक वाइट कलर की ढेर सारी बिल्डिंग है जिसमें कांच की खिड़कियां --

सफेद लाल गुलाबी पीले और हरे रंग के पत्तों से सजावट हुई है।

जमीन पर भूरे रंग की क्रीम रंग की टाइल्स लगी है।